ग्रॉसरी स्टोर में गुब्बारे और लाइट्स के द्वारा काफी अच्छी सजावट की गई है।

देखने से प्रतीत होता है कि यह ढाबा काफी पुराना बना हुआ है।

यहां कुछ पर्यटक घूमते हुए दिख रहे हैं।

सिनेमा हॉल में काफी लोग बैठे हुए हैं लाइटे है अभी भी जल रही है कोई अंधेरा में नहीं देख रहे है।

पुस्तकालय का नाम डॉक्टर राधाकृष्ण रा राज्य केंद्रीय पुस्तकालय है।

यहां सोने की व्यवस्था के लिए कुछ पलंग और रजाईयां--

यहां काउंटर पे एक व्यक्ति बैठा हुआ है तथा कुछ लोग अपनी खरीददारी में व्यस्त हैं।

पिक्चर में किसी भव्य इमारत को दिखाया गया है यह इमारत का अंदरूनी हिस्सा है।

इस पेट्रोल पंप पे पेट्रोल कर्मी एक मोटरसाइकिल में पेट्रोल भरता हुआ नजर आ रहा है।

इस हॉस्टल के बाहर कुछ कारें पार्क की हुई है हॉस्टल का गेट काफी सुंदर है।

कुछ टेबल्स कुर्सियों के साथ रखी गई है कुर्सियों की गद्दियां काफी मुलायम हमें दिख रही है।

पिक्चर में किसी शॉप का दृश्य दिखाया गया है इस शॉप में --